है और वहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ मास्क पहना हुआ है देख सकते है और ये काफी अच्छा लग रहा है देखने --

यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह दुकान में बोरियाँ रखी हुई हैं बाहर --

आप देख सकते है मशीन वगेरा लगी हुयी है जिसे देख सकते है ऊपर माल जाता है देख सकते है खाफी ऊपर तक जा रही है मशीन और ये देख सकते हवे यहाँ पर छत वगेरा डाला हुवा है।